और पीछे मुझे यहां पर जो है पेड़ दिखाई दे रहे हैं हरे भरे पेड़।

और यहां पे कुछ लोग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं।

और एक रैपर भी रखा हुआ है और एक कुर्सी के ऊपर यहां पे अखफार भी रखा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है।

और आगे एक मुझे घर सा दिखाई दे रहा है जिसका कलर जो है वाइट कलर का है।

यहां मुझे इधर उधर अ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं जो कि हरे कलर के है और यहां बीस भी लिखा हुआ है।

और एक आदमी का पैर और उसकी चप्पल दिख रही है।

और यहां पे घास भी दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे कुछ लोग जो है एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं।